बहोत सारे लोग है टोकनी है बहोत सारी टोकनी है रहे वाला चेयर है कुर्सी है --

बहुत बड़ा ग्राउंड है बहुत सारे पेड़ लगे हुए हरे पेड़ लगे गुलाबी पेड़ लगे हुए है बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

बहोत सारी कार्पेट बिछी हुई हैं बहोत सारे लोग खड़े-- -

बहोत बड़ा पोस्टर लगा हुआ है ये लोग किताब बेच रहे हैं किताब बहोत सारी हैं गणित की किताब है की किताब है।

बहुत सारे पोस्टर लगे हुए है टेबल रखी है कुर्सी लगी है बल्ब लगे है फ्लोरिंग है।

हां लगा हुआ है तार लगी हुई है पेड़ पौधे लगे हुए हैं बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हैं।

बहुत बड़ा घर है जहां शादी हो रही है एक गाड़ी खड़ी हुई है।

बहुत ही अच्छी गाड़ी खड़ी हुई हैं शानदार गाड़ी खड़ी हुई हैं बहुत सारे लोग हैं बहुत अच्छा ला--

बहोत ही अच्छा पोस्टर लगा है बहुत ही शानदार पोस्टर लगा हैं।

यह एक बहुत बड़ा घर है सोफा रखा हुआ है टी_वी लगी हुई है।

बहुत सारी लड़कियां लड़के नाव पर बैठे हुए हैं ये लोग घूमने के लिए जा रहे हैं।

खूब सारे घर बने हुए हैं हरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं खेती और आम के पेड़ लगे हुए हैं।

बहुत सारी अलमारी है ये फ्लोरिंग बहुत अच्छी है बहुत ही शानदार फ्लोरिंग है।

बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत ही शानदार है।

बहुत ही अच्छा झूला लगा हुआ है बहुत ही अच्छा है।

बहुत सारा प्याजु है ये पन्ना रिजर्व टाइगर है यहां पर पोस्टर लगा हुआ है शेर का पोस्टर --

चाय अड्डा लिखा हुआ है मैगी जोन लिखा हुआ है बहुत ही शानदार पोस्टर लगा हुआ है चाय की दुकान है।

बहुत ही शानदार डाकघर हैं खिड़की लगी हुई हैं दरवाजा लगा हुवा हैं शटर लगी हुई हैं पेड़ लगे हुए हैं।